जिन मे फूल दिखाई दे रहे है फूलों का रंग पीला और जामुनी नज़र आ रहा है।

व् पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो का रंग हरा नज़र आ रहा है इसमे लाइटे दिखाई दे रही है।

जमीन पर हरे रंग का फर्स बिछा हुआ है।